ढाबा है ढाबे के अंदर ढेर सारी टैबले लगी हुई है ढाबे के अंदर ढेर सारी कुर्सियां लगी हुई है कुर्सियों का रंग-- ]

एक हॉल हे हॉल काफी बड़ा हे हॉल के अन्दर ढेर सारे लोग हे हॉल के अन्दर कुछ लोग खड़े हुए हे हॉल के अन्दर कुछ लोग बेठे हुए है|

सफाई कर रहे हैं दोनों व्यक्तियों के बीच पे एक बाल्टी भी रखी हुई है जो सामने दिख रही--